उगता हुआ सूरज काफी खूबसूरत लग रहा है इसकी किरने साफ नजर आ रही है यह इसका नजारा पेड़ पौधे के बीच से और काफी खूबसूरत लग रहा है।

हाथ से बना हुआ खूबसूरत सा समान है जिसमें एक टोकरी गुलदस्ता और चिड़याँ रखने का तेल उगाने समान है।

वायरिंग का तार बिछा दिया गया है काफी अच्छे तरीके से।

वो काफी खूबसूरत लग रहा है फुहारा को फुहारा का पानी नीचे उतरने का गोल सा घेराव किया गया है इस घेराव में बल्ब जल रही है तो ये फुहारा और भी खूबसूरत लग रहा है।

तीन डंडे भी गड़े हुए है जिसमें बॉल लग जाने से प्लेयर आउट हो जाते हैं क्रिकेट में ग्यारह खिलाड़ी होते हैं।